मुझे फोटो में एक दरवाजा दिखाई दे रहा है मुझे एक फोटो में एक खिड़की दिखाई दे रही है।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

मुझे फोटो में बहोत सारे तरबूज दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारी ईट दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में दरवाजा दिख रहा है।

मुझे इस फोटो में कुछ डंबल दिखाई दे रहे--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

मुझे इस फोटो में कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में बहुत सारी लाइटों की सजावटें दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में टेबल दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में एक कार दिखाई दे रहा है।